और सामने कुछ आदमी दिखाई दे रहे है जो ब्लैक एंड व्हाइट और कुछ रंगीन दिखा दिख रहे हैं और अंदर से सफेद आसमान दी--

रेलिंग दिख रही है जो ऊंची धनुष जैसी बनी हुई है रंगीन है और सामने दीवाल है जो--

भरी हुई है जो रंग-बिरंगी है जो बहुत सारे आदमी और महिला--

में भूसा प्यार का ढेर दिख रहा है साइड में जाली लगी हुई है और नीचे कही कही --

पेड़ दिखाई दे रही है ऊपर सफेद और काला आसमान दिख रहा है साइड में खेत है जिसमें हरी घास दिख रही--

में एक टेबल लगी है इसके ऊपर बहुत सारी मछलियां कुछ केकड़े रखे हुए हैं कोई लाल सफेद और मछली भी--

हुई है और सामने की दीवाल पर तीन फोटो लगी हुई है और बाहर गेट दिख रहा है।

सामने छ आदमी खड़े हुए हैं कुछ महिलाऐ हैं और--

सामने एक ट्रैक्टर ट्राली दिख रहा है ट्रैक्टर लाल कलर का है और--

और साइड में एक गुब्बारे वाला है जो रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हुए हैं और टेंट लगा हुआ है जो सफेद दिख रहा है अंदर नीचे हरि चादर है और बहोत सारे आदमी--

बड़ा खंभा दिखाई दे रहा हैं जिसके वो ट्रक खड़ा है जो नीला दिख रहा है और सामने एक पानी का टैंकर --

सामने एक ब्रिज दिख रहा है जो सफेद कलर का है और साइड में सीढ़ियां बनी हुई है जो जिसमें बीच में--

डली हुई है और कुछ हरे पेड़ लगे हुए हैं नीचे जमीन का कलर ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है और दूर एक सफ़ेद घर--

हमे एक बड़ी पुरानी बिल्डिंग दिख रखी है जो ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट दिख है और नीचे कहीं कहीं --

जिसमेंअ कांच की सफेद कलर की है पीली पट्टी है और नीचे दिवाल सफेद है और एक स्टूल है जिसके ऊपर एक बैग रखा हुआ है सामने दीवार सफ--

बहुत कुछ लिखा हुआ है अंदर सीढ़ियाँ है और एक आदमी दिख रहा हैं बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं।